रहने का जगह है जैसे रेंट पे लोग रहते है पार्टी में --

अ पिलर है गंगा जी किनारे पिलर है।